नीचे फर्श भी हो रहा है।

मकान भी दिख रहे हैं।

डपड़ियां भी रखी हुई है।

इसमें कुछ पुराने डिजाइन भी निकले हुए हैं और यह ऊपर से प्लेन है।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

एक टेबल पर एक फोन भी रखा हुआ है।

मे भी लगी हुई हैं और बिथ पर टैल भी लगी हुई है।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

इसमें एक टावर भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे भी--

इसमें दो कैंपर भी दिखाई दे रहे हैं और एक छतरी भी दिखाई दे रही है।

और इसमें टेबल भी दिखाई दे रही है और ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर फोटो भी छपा हुआ है।

और मोटरसाइकिल का पहिया भी दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ कंप्यूटर रखा हुआ है।

कुछ पेड़ पौधे दिख रहे--

यह फोटो किसी परचून की दुकान का है।

सा आसमान भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक औरत और बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।

और उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है।

इसमें एक लकड़ी का गेट भी दिख रहा है।

बोर्ड भी लगे हुए है।

इस फोटो में एक बड़ा मंदिर दिख रहा।

इस पर जी_आई_टी_एम लिख रहा--

एक सफेद रंग का पंखा भी दिख रहा।

इनमें एक बेंच भी है।

इसमें लोहे के जंगले भी लगे हुए हैं।

साइड में एक बड़ी बाल भी पड़ी हुई है।

इस फोटो में एक अल्टो कार दिख रही है।

यहां कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

इसमें कुछ पेड़ पौधे भी दिख रही है।

इसमें आसमान भी दिख रहा है।

पीछे बहोत सारे मकान देख रहे हैं।

एक वाइपर भी रखा हुआ है।

और आसमान भी दिख रहा--

और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे।

आसमान भी दिखाई दे रहा--

कुछ ना पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं।

पीछे धरती भी दिख रही--

इस फोटो में कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

मकान भी दिखाई दे रहे है और बस भी दिखाई दे रहीं है।

और बहुत सारे आदमी भी हैं।

एक समुंदर भी दिख रहा है जिसमें पानी भी नजर आ रहा है।

नीचे मैट बिछ रहे हैं मैट पटा हुआ है।

इसमें एक बोतल दिख रही एक डब्बा भी दिख रहा --